कार को सही करने के लिए एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति भी बैठा हुआ है साइड में ही --

क्रिकेट धूप में खेल रहे हैं और यहां पर हरी भरी खास भी है थोड़ी बहोत --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

ऊपर के स्लाइड मुझे व्हाइट कलर का पेंट हो रखा है और एक आदमी ने --

वनस्पति एरिया नजर आ रहा है और छोटे छोटे पौधे पुष्प और हरे भरे घास भी नजर आ रही है।

सामान मुझे नजर आ रहे मुझे केले अनार एप्पल संतरा ये चीजे भी नजर आ रही हैं।

बिल्डिंग का नाम अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है बस विद्या हीं नज़र आ रहा है मुझे तो और इस --

तस्वीर में मुझे थली हाउस नजर आ रहा है और उसी में लाइटिंग भी लगी हुई है बहोत ही अच्छी।

और इसमें मुझे तीन व्यक्ति नजर आ रहे हैं दो कि जो बैठे हुए हैं और एक जो चलके आ रहा है।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

मुझे हरियाली भी नजर आ रही हैं और झूले भी हैं यहां पे बच्चों के लिए और --

पोस्टर के पास ही में दुकान के बाहर बोहोत सारे कट्टे रखे हुए हैं जिनके अंदर प्याज आलू ले

इस तस्वीर में मुझे एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है यहां पे बहोत से आदमी नहा रहे हैं।

और व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है।

यहां पर एक आदमी ने व्हाइट कलर की शर्ट ब्लैक कलर का बेल्ट और स्किन कलर की जींस पहनी हुई है।

इस तस्वीर में मुझे पैरदान दिखाई दे रहे हैं। पैरदान बहुत अलग-अलग है और इनमें कलर भी बहुत सारे हैं।